दीवार पर एक पीले रंग का बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिसपर स्वच्छ सर्वेक्षण दो हज़ार बाईस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है दीवार के पास में--

यहाँ पर एक दूकान दिखाई दे रही है आलमारी दिखाई दे रही है और यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है फ्रिज काफी बड़ा दिखाई दे रहा है ।

हरे-हरे पेड़ दिखाई दे रहे है दीवार दिखाई दे रही है दीवार काफी बड़ी दिखाई दे रही है दीवार का रंग पीला दिखाई दे रहा है लोहे के डंडे लगे हुए दिखाई दे रहे है आस-पास ग्राउंड --

जेसीबी का रंग पीला दिखाई दे रहा है मिट्टी दिखाई दे रही है मिट्टी मिट्टी का --